इस मौखिक अभ्यास अथ्वा स्पोकन ट्युटोरियल में आप का स्वागत है जिसमें आप विन्ड़ोज़ में लेटेक की स्थापना सिखेंगे
लेटेक द्वारा तैयार किए गए डॊक्युमेंट्स उत्कृष्ठ हैं
यदि आप अपने जीवन में कईं डॊक्युमेंट्स बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपको इसी समय लेटेक का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए
यदि आप इनमें बहुत सारा मॆथमाटिकस अथ्वा गणित जोड़ना चाहते है तो लेटेक का कोई मुकाबला नहीं
लेटेक डॊक्युमेंट्स जो एक औपरेटिंग सिस्टम पर बनाई गईं हैं वही बिना कोई परिवर्तन के दुसरे औपरेटिंग सिस्टमस में काम करेगी लिनक्स और मैक सहित
इसका विपरीत भी लागू होता है
लेटेक विनामूल्य और ओपन सोर्स सॉफ़्टवॆयर है
इसके अलावा लेटेक के उत्कृष्ट उपयोगकर्ता समुदाय हर संदेह को मिटाने में सहायता देगा
उदाहरण के लिए - टग इंड़िया पर जाएं
मौदगल्या डॉट ओ आर जी साइट पर आप निम्नलिखित ट्युटोरियलस पाएँगे
कृपया इस सूची के पहले ट्युटोरियल - वॉट इज़ कॉम्पाइलेश्न का अभ्यास करें और उसके बाद ही इस ट्युटोरियल को देखें
अक्सर इंटरनॆट की खोज जानकारी का सर्वोत्तम स्रोत है
आप भविष्य में लेटेक के लिए समर्थन httpfosseeइन एच टी टी पी फॉस्सी डॉट इन पर पाएंगे
ध्यान रहे कि फॉस्सी में दो ई और दो एस हैं
फॉस्सी का पूर्ण रूप फ़्री एंड़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन सायन्स एंड़ ऐंजिनीयरिंग ऐड्युकेशन है
अब मैं आपको विन्ड़ोज़ में लेटेक का उपयोग समझाती हूँ
मैं मिक्टेक की स्थापना से शुरु करती हूँ जो कि लेटेक का मुफ्त वितरण है
उसके बाद टेक सेंटर जो मिक्टेक का फ़्रंट एंड़ है
मैं आपको टेक सेंटर के प्रयोग से संचय करना और अड़ोबी रीड़र की सहायता से उसका अवलोकन करना सिखाऊँगी
उसके बाद मैं एक वैकल्पिक पी ड़ी एफ़ रीड़र सुमात्रा के साथ समाप्त करुँगी
मिक्टेक विन्ड़ोज़ पर लेटेक की एक लोकप्रिय स्थापना है
miktekओआरजी मिक्टेक डॉट और्ग पर वर्जन 27 यानि संस्करण दो दशमलव साथ का पता लगाएँ
चलिए वहाँ चलें

आप इसे डाउनलोड़ कर सकतें हैं
डाउनलोड़ करने के बाद कमप्युटर पर उसे सुरक्षित करें ताकि आप शुरुआत में इसे कई बार उपयोग कर सकते हैं
इस फ़ाइल का नाम यहाँ दिया गया है
इस फ़ाइल की साइज़ करीब तिरासी मेगा बाइट्स है
मिक्टेक का पूर्ण संस्करण काफ़ी बड़ा है करीब नौ सौ मेगा बाइट्स इसलिए हम इसका सुझाव नहीं देंगे
यदि आपके पास अच्छा संपर्क नहीं है तो एक सी डी का उपयोग करें जो भविष्य में fosseइन फॉस्सी डॉट इन पर प्राप्त होगा
मैंने इस स्थापना को माय डाउनलोड़्स ड़िरेक्टरी में सुरक्षित कर दिया है और मैं अब इसे खोलती हूँ
मैंने इसे डाउनलोड़ कर दिया है
अब इसकी आइकॉन पर क्लिक करके मैं इसकी स्थापना करूँगी
व्यक्तिक्रम उत्तर दें
इसे स्थापित करने में करीब बीस मिनीट लगता है इस लिए मैं इसे यहाँ नहीं दिखाऊँगी
मैंने इसे स्थापित कर दिया है और इस जगह पर इसकी स्थापना हुई है
अगला अड़ोबी रीड़र यह एक फ़्री यानि निशुल्क रीड़र है जो पी ड़ी एफ़ फ़ाइल का प्रदर्शन करता है
आपके सिस्टम में यह पहले से मौजुद होगा
यदि ऐसा है तो आप इस भाग को छोड़ सकतें हैं
यदि आप के सिस्टम में यह नहीं है तो adobeकॉम अड़ोबी डॉट कॉम में जाएं
फ़्री अड़ोबी रीड़र को डाउनलोड़ करें
मैंने इसे माय डाउनलोड़्स ड़िरेक्टरी में डाउनलोड़ करके सुरक्षित कर दिया है
यह यहाँ पर है
उसे ड़बल क्लिक करके इसकी स्थापना करेंगे
व्यक्तिक्रम उत्तर स्वीकार्य हैं
मैंने पहले ही यह किया है
अब हम विन्ड़ोज़ में टेकनिक सेंटर को स्थापित करेंगे
texniccentreओआरजी टेकनिक सेंटर डॉट ओ आर जी पर जाएं - ध्यान दें कि टेकनिक सेंटर में दो सी हैं
ठीक है देखती हूँ कि यह मेरे पास है कि नहीं
यह यहाँ
तो यहाँ पर टेकनिक सेंटर ड़ाउनलोड़ ड़ाइरेक्टरी है
और अगर हम यहाँ नीचे जाएं देख रही हूँ कि हम वापस टेकनिक सेंटर डॉट ओ आर जी में जा रहें हैं
जैसे हम यह कर रहें हैं हम वापस - ओह - यह यहाँ देखिए टेकनिक सेंटर का होम पेज
आप देख सकतें हैं कि यह टेकनिक सेंटर की जानकारी दे रही है
अपने लेटेक ब्रह्मांड़ के केंद्र इत्यादि
अब आप को ड़ाउनलोड़ की लड़ी पर क्लिक करना है यह पिछले पन्ने पर है
वहाँ जाने पर सबसे पहली कड़ी पर क्लिक करें और ड़ाउनलोड़ करें
मैंने इसे ड़ाउनलोड़ कर दिया है
तो आप इसे ड़ाउनलोड़स ड़िरेक्टरी में देख सकते हो जिसमें मैंने ड़ाउनलोड़ किया है
अब हम ऐसा करेंगें हम यहाँ वापस जाएंगे ड़ाउनलोड़ पर क्लिक करेंगें
यह आपको डाउनलोड़स की सूची पर ले जाएगा जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था
आपको टेकनिक सेंटर इंस्टॉलर की आवश्यकता है जो सूची में पहला है
क्लिक करें - आपको शायद डाउनलोड करने के लिए एक मिरर का चुनाव करना पड़े
डाउनलोड करने के बाद उसे सुरक्षित करें ताकि आप चाहें तो भविष्य में इसे पुनः स्थापित कर सकते हैं
जैसे के मैंने पहले उल्लेख किया था - मैंने इसे अपने ड़ाउनलोड़ ड़िरेक्टरी में सुरक्षित कर दिया है
अब हम इसे डबल क्लिक करके और डिफ़ॉल्ट यानि व्यक्तिक्रम उत्तर देते हुए स्थापित करेंगे
तो मैं वहाँ जा रही हूँ
डाउनलोड में जाएंगे
ठीक है - आगे बढ़ते हैं
जी पी एल अग्रिमेंट को स्वीकार करतें हैं
और अब इसकी स्थापना करतें हैं

यह अब स्थापित हो रहा है

टेकनिक सेंटर की स्थापना होने पर डैस्कटौप पर एक शोर्टकट दिखाई देगी
डैस्कटौप के इस टेकनिक सेंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उसे आरम्भ करें
ठीक है - डैस्कटौप यहाँ है
मैं इसे आरम्भ करती हूँ
इसे बंध कर देती हूँ
अब हम इसे कौंफ़िगर करते हैं
यहाँ कहाँ गया है कि उस जगह का नाम दिया जाएं जहाँ टेक डीस्ट्रिब्यूशन स्थित है
मुझे पता है कि यह कहाँ है
तो अब मैं उसे दर्ज़ करती हूँ
सी programfilesमिकटेक्स 27miktexबिन सी कोलन प्रोग्राम फ़ाइल्स मिक्टेक 27 मिक्टेक बिन
बेशक आप भी इसे ब्राउज़ कर सकते हैं और ड़िरेक्टरी को ढूँढ सकते हैं
ठीक है मैं अगले पन्ने पर आ गई हूँ
यह पोस्ट स्क्रिप्ट व्यूवर है
मैं इसे स्वीकार करती हूँ
यहाँ कुछ भी दर्ज़ नहीं करेंगे
अब यहाँ पर मैं ब्राउज़ करके उस ड़िरेक्टरी को स्थापित करूँगी जहाँ अड़ोबी रीड़र स्थित है
यहाँ यह प्रोग्राम filesअडोबे रीडर 90 रीडर प्रोग्राम फ़ाइल्स अड़ोबी रीड़र 90 रीड़र अब उस पर क्लिक करूँगी
अब इसका चुनाव हुआ है
अब मैं फ़िनिश पर क्लिक करूँगी
ठीक है अब टेकनिक सेंटर कौंफ़िगर हो गया है
अब मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आप को सब कुछ साथ में दिखें
आई ट आइ टी यहाँ आ गया है
चलिए इसे थोड़ासा बड़ा कर देती हूँ
अब यह उपयोग के लिए तैयार है
अब यहाँ वापस आ जाते हैं
वह एक टिप्पणि देगा उसे बंध करें
आगे वह एक कौंफ़िगरेशन मैन्यू को खोलेगा और लेटेक डीस्ट्रिब्यूशन को स्थापित करने का संकेत देगा
मिक्टेक की सीफ़ारिश भी करेगा
मैंने इसे पहले ही किया है
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
आपसे उस फ़ोल्ड़र का पता पुछा जाएगा जहाँ मिक्टेक के बायनरी फ़ाइल्स स्थित है
मैंने इसे भी पहले दर्ज़ किया है
मेरे ड़िरेक्टरी में यह यहाँ पर स्थित है
मैंने इसे हस्त दर्ज़ किया है
पी एस फ़ाइल्स - यहाँ कुछ भी दर्ज़ नहीं करना है
इसके बाद मैंने ब्राउज़ करके एक्रोबॅट पी ड़ी एफ़ रीड़र को ढूँढ निकाला है
अब टेकनिक सेंटर उपयोग के लिए तैयार है
कृपया मौदगल्या ड़ॉट ओ आर जी साइट पर पाए जाने वाला स्पोकन ट्यूटोरियल - वॉट इज़ कम्पाइलेशन - का परामर्श करें अगर आपने अब तक न किया हो
ट्यूटोरियल में आगे मैं यही मान कर चलूँगी कि आप इसका परामर्श कर चुके हैं
आइए टेकनिक सेंटर में जाते हैं और फ़ाइल मैन्यू पर क्लिक करते हैं
अब क्या करें
अगर आप नया फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू न्यू पर क्लिक करें टाइप करें और सुरक्षित करें
मेरे पास पहले से ही helloटेक्स हैलो ड़ॉट टेक है और मैं उसे लोड़ करती हूँ
अब मैं ऐसा करती हूँ यहाँ जाती हूँ फ़ाइल - ओपन - यह लेटेक फ़ाइल्ज़ में है हैलो ड़ॉट टेक
आइए इसे खोलतें हैं
अच्छा यहाँ वापस आ जाते हैं
टेकनिक सेंटर का सबसे उत्तम हैल्प या सहायता उसी के साथ आता है
एक और उत्तम स्रोत है texniccentreओआरजी टेकनिक सेंटर ड़ॉट ओ आर जी जो हम पहले देख चुके हैं
अबी हम हैल्प पर जाएंगे कोन्टेंट्स पर क्लिक करेंगे और टेकनिक सेंटर एवं लेटेक के लिए सहायता पाएंगे
यानि मैं कहना चाहती हूँ - यहाँ आती हूँ यहाँ हैल्प है कोन्टेंट्ज़ है
इसका मतलब है कि दो चिज़ों के लिए हैल्प यानि सहायता उपलब्द है टेकनिक सेंटर एवं लेटेक इ हैल्प बुक के लिए
अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो बहुत सारे विषय दिखाई देंगें
आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ बहुत सारे विषय देखेंगे - उदाहरण के लिए लेटेक मैत्स और ग्राफ़िक्स देखेंगे
मैत्स - इस में आपको बहुत सारे विषय दिखाई देगा जैसे फ्रैक्शंस मैट्रिसेज फ़्राक्शन्ज़ मेट्रिसज़ और अन्य विषय भी
इसे बंध करती हूँ
एड़वान्स्ड़ लेटेक एन्वायरमेंटज़ - यहाँ अलाइनमेंटज़ एन्वायरमेंटज़ ऐरे पिक्चरज़ मैथ्स मैत्स और कई अन्य विषय हैं
इसे भी बंध करती हूँ
ठीक है अब यहाँ आ जाती हूँ
टेकनिक सेंटर के लिए हैल्प - पहला - फ़ोंट रूप और आकार पर सहायता देता है
टेकनिक सेंटर को कौंफ़िगर करने में यह सहायता देता है
कभी कभी वहाँ मैनुअल और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच फ़र्क हो सकता है तब आप सहायता पाने के लिए इंटरनेट की खोज करें
वास्तव में यह सबी ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर प्रणालियों में प्रमाणित तरीका है किसी को पूछना वे जवाब देंगे
दुसरा - लेटेक संबंधित सहायता है - रिपोर्ट की संरचना कैसे करें गणित को कैसे शामिल करें लीस्ट एन्वायरमेंट को कैसे शामिल करें इत्यादि
बेशक इंटरनेट की खोज भी एक बेहतरीन चुनाव है
अब यहाँ वापस आते हैं और फ़ोंट की आकार को बढ़ातें हैं
यह यहाँ है - टूल्ज़ ओपशनज़ टेक्स्ट फ़ोरमैट
मैं बारह दर्ज़े का चुनाव करती हूँ
ठीक है - आप देख सकतें हैं कि आकार अब बढ़ा है
मैंने फ़ोंट को बढ़ा कर दिया
हमने यह कर दिया
अब अगर आप चाहें तो पंक्ति की संख्या को शामिल कर सकते हैं
तो यहाँ वापस आ जातें हैं - टूल्स आप्शंस एडिटर शो लाइन नंबर्स टूल्ज़ ओपशनज़ एड़िटर शो लाइन नम्बर्ज़
आप देख सकतें हैं कि यहाँ लाइन नम्बर्ज़ यानि पंक्ति की संख्या दिखाई देती है
चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट का संचालन करतें हैं
लेटेक टू पी ड़ी एफ़ इस विकल्प का चुनाव करें
आइए यह करें लेटेक टू पी ड़ी एफ़
अब एक साथ ctrlshiftफ़5 कीज़ कंट्रोल शिफ़्ट एफ़ फ़ाइव कीज़ को दबाएं
मैं यह करती हूँ
कंट्रोल शिफ़्ट एफ़ फ़ाइव कीज़ को एक साथ दबाने से क्या होगा
ऐसा करने से संचय होगा और परिणामी पी ड़ी एफ़ फ़ाइल दिखाई देगी
उसमें केवल एक ही पंक्ति होगा
आइए ऐसा करते हैं कंट्रोल शिफ़्ट एफ़ फ़ाइव
आप देख सकतें हैं कि वह संचय कर रहा है
और अब वह एक पी ड़ी एफ़ रीड़र को खोल देता है
मैं उसे यहाँ लाती हूँ
उसे बढ़ा कर देती हूँ
आप यहाँ केवल एक ही पंक्ति देख सकतें हैं
आप इस फ़ाइल को परिवर्थित करके संचय करके उसमें परिणाम देख सकतें हैं
अब मैं हैलो ड़ॉट टेक और हैलो ड़ॉट पी ड़ी एफ़ को बंध करती हूँ
हम यह बाद में करेंगे
अब मैं आपको अड़ोबी रीड़र की एक ऋठि समझाती हूँ
इसे समझाने के लिए मैं रीपोर्ट डॉट टेक फ़ाइल को लोड़ करती हूँ
इस फ़ाइल को मैंने रीपोर्ट राइटींग की स्पोकन ट्यूटोरियल बनाने के लिए प्रयोग किया था और यह मौदगल्या ड़ॉट ओ आर जी पर उपलब्द है
तो अब मैं यह करती हूँ
इसे बंध करती हूँ और रीपोर्ट डॉट टेक को खोलती हूँ
तो अब मैं इसे यहाँ ले जाती हूँ ताकि मुझे यह कुछ और दिखे
अब सब से पहले क्या करेंगें - इसे कम्पाइल करेंगे ctrl shift और फ़5 को साथ में दबाकर
यह अब कम्पाइल हो गया और एक पन्ने का रीपोर्ट आ गया
मैं इसे यहाँ ले जाती हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ
ठीक है अब क्या
हमने यह कर दिया है इस लिए अब हम यह करेंगे - हम इस ड़ॉक्यूमेंट के क्लास को रीपोर्ट क्लास बनाएंगे
यह रहा - आर्टिकल क्लास - इसे मिटा देती हूँ और बदले में रीपोर्ट टाइप करती हूँ
सुरक्षित करके संचय करती हूँ ctrl shift और फ़5
ठीक है अब यह दो पन्नों पर आ गया है
इसे पिछे लेते हैं थोड़ा बड़ा करतें हैं और दुसरे पन्ने पर जातें हैं
यह रहा दुसरा पन्ना
जैसे कि हमने देखा यह दो पन्नों पर आ गया है और ध्यान दें कि आप दुसरे पन्ने को देख रहे थे
आइए इसे दोबारा संचय करें
इसे हम बंध कर सकतें हैं क्योंकि हमें यह अब नहीं चाहिए
रीपोर्ट डॉट पी ड़ी एफ़ के भीतर जातें हैं
ठीक है मैं कहना चाहती हूँ कि मैं दुसरे पन्ने को देख रही हूँ
आप इसे देख सकतें हैं - यह दुसरा पन्ना है
हम दुसरे पन्ने को देख रहें हैं
अब यहाँ वापस आ जातें हैं और इसे दोबारा संचय करतें हैं
ctrl shift और फ़5 और आप देख सकतें हैं कि यह दोबारा खुल जाता है लेकिन पहले पन्ने को दिखाता है
यही बात मैंने अबी कहा था कि यह पहले पन्ने को खोलता है
हम दुसरे पन्ने को देख रहे थे लेकिन संचय करते ही यह पहले पन्ने पर आ गया है
यह एक समस्या है - अड़ोबी रीड़र को याद नहीं रहता कि हम किस पन्ने पर थे
बड़े ड़ॉक्यूमेंटज़ के लिए यह एक गमबीर समस्या हो सकती है
अगर आप अड़ोबी रीड़र का प्रयोग करेंगे तो संचय के बाद फ़ाइल हमेशा पहले पन्ने पर ही आएगी
बड़े ड़ॉक्यूमेंटज़ के लिए यह एक समस्या है
पी ड़ी एफ़ रीड़र सुमत्रा इस समस्या को सुलजा सकता है
सुमत्रा स्वचलित रूप से पी ड़ी एफ़ फ़ाइल को ताज़ा करती है और इसके अलावा उस पन्ने को याद रकती है जिसे आखिर में देखा था
और सुमत्रा निशुल्क और ओपन सोर्स है
सुमत्रा रीड़र को ढूँढने पर आप इस पन्ने में पहुँचेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी
यह रहा अब इस ड़ाउनलोड़ पन्ने पर जाएं और यह आप को वह फ़ाइल दिखाती है जिसकी स्थापना करनी है
यह करीब 15एमबी ड़ेड़ एम बी का है और मैंने इसे ड़ाउनलोड़ कर दिया है
तो अब मैं इसे बंध करती हूँ और यहाँ आती हूँ
यहाँ चलते हैं - अगले पन्ने पर
अब हम आइकन पर ड़बल किल्क करेंगे और व्यक्तिक्रम उत्तर देते हूए इसकी स्थापना करेंगे
अब मैं यह करती हूँ
ड़ाउनलोड़्ज़ में जाती हूँ - मैंने सुमत्रा को पहले ही ड़ाउनलोड़ किया है
अब उसकी स्थापना करती हूँ
ठीक है - इंस्टॉल
हाँ - यह स्थापिथ्त हो गया
बंध करतें हैं
सुमत्रा की स्थापना हो गई
अगले पन्ने पर जाएंगे - तो मेरे सिस्टम में यह प्रोगाम फ़ाइलज़ में स्थापिथ्त हुआ है सुमत्रा डॉट पी ड़ी एफ़
पहले आपको टेकनिक सेंटर को यह बताना होगा कि सुमत्रा का प्रयोग करें इस लिए बिल्ड़ पर जाएं और आउटपुट प्रोफ़ाइल को स्पष्ट करें
हम यह सब करेंगें
फ़िर व्यूवर पर
इस स्थान पर यह है
आइए इसे ढ़ूँढतें हैं
वासतव में हमें यह नहीं चाहिए
मैं इसे बंध करती हूँ
यह टेकनिक सेंटर है तो बिल्ड़ आउटपुट प्रोफ़ाइल को स्पष्ट करें और व्यूवर पर जाएं
तो यह अड़ोबी की ओर इशारा करता है
मान लीजिए कि मुझे इसे बदलना है
ठीक है - तो यहाँ वापस आतें हैं
यहाँ आतें हैं
यहाँ आतें हैं
प्रोग्राम फ़ाइलज़ में हम सुमत्रा को देखते हैं
और आपको इसका जिक्र करना है
तो अब यह हो गया
अब से यह सुमत्रा के प्रयोग से संचय करेगा
तो हमने यह किया - हमने ब्राउज़ किया फ़ाइल को ढ़ूँढा और अब हम सुमत्रा का प्रयोग करने के लिए तैयार है
अड़ोबी रीड़र को बंध करती हूँ
आइए कंट्रोल और एफ़ सेवन को साथ में दबाकर रीपोर्ट डॉट टेक का संचय करतें हैं
हम कंट्रोल और एफ़ सेवन को दबाएंगे न कि पहले जैसे
कंट्रोल और एफ़ सेवन और इसका संचय हो गया है
अब आगे क्या करें
रीपोर्ट डॉट पी ड़ी एफ़ को ढ़ूँढतें हैं
उसे सुमत्रा के प्रयोग से खोलतें हैं
आइए लेटेक फ़ाइल में जातें हैं रीपोर्ट डॉट पी ड़ी एफ़ यहाँ है
तो मैं इसे सुमत्रा के प्रयोग से खोलती हूँ
ठीक है - यह है सुमत्रा
मैं इसे ज़रासा ऊपर लेती हूँ
आइए दुसरे पन्ने पर जातें हैं
ठीक है - यह पहला पन्ना है और यह दुसरे पन्ने पर इस तरह से जाएंगें
तो अब ऐसा करतें हैं - हम दुसरे पन्ने पर आ गएं हैं - अब पाठ में एक पंक्ति जोड़तें हैं

मैं अब एक पंक्ति जोड़ती हूँ - एड़ेड़ लाइन
सुरक्षित करती हूँ और कंट्रोल और एफ़ सेवन को दबाती हूँ
और आप रीपोर्ट डॉट पी ड़ी एफ़ में यह देख सकते हैं कि प्रष्ठ संख्या वही है
वासतव में मैंने यह किया - यह पहले से ही मौजुद था - तो आप को यकीन दिलाने के लिए - मैं इसे छोटा करती हूँ ताकि मुझे यह दोनों साथ में दिखे
ठीक है मैं अब ऐसा करती हूँ - इसे मिठा देती हूँ सुरक्षित करती हूँ और कंट्रोल और एफ़ सेवन से संचय करती हूँ
अब इसे खोलते हैं और यह चला गया है
वासतव में मैं ऐसा भी कर सकती हूँ - मैं चापटर न्यू में जा सकती हूँ
मैं इसे बंध करती हूँ सुरक्षित करती हूँ और कंट्रोल और एफ़ सेवन से संचय करती हूँ
आइए यहाँ चलतें हैं - अब हमें तीन पन्ने नज़र आतें हैं
लेकिन हम दुसरे पन्ने पर हैं क्यूँकि हम शुरुवात में दुसरे पन्ने पर ही थे
अब हम तीसरे पन्ने पर जाएंगे और फ़िर से संचय करतें हैं
यहाँ वापस आतें हैं और यह बिलकुल ही बदला नहीं है
यही सुमत्रा की खासियत है
ठीक है - हमने यह सबी कार्य किए हैं - आइए दोबारा इसे देखें
पी ड़ी एफ़ फ़ाइल अपने आप ही बदलती है - आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है
और महत्त्वपुर्ण बात यह है कि यह वही पन्ना दिखाता है
एक अपेंड़िक्स को जोड़ेते है कंट्रोल और एफ़ सेवन से संचय करेते है - इसे में तीन पन्ने हैं
तो हम तिसरे पन्ने पर जाएंगें और पुनः संचय करेंगे
यह तिसरे पन्ने पर ही रहेगा
अब आगे क्या
हमने केवल मिक्टेक और लेटेक के बेसिक बेसिक यानि बुनियादी पाठंतर को स्थापित किया है
बेशक आप इसके प्रयोग से काफ़ी कुछ कर सकतें हैं
लेकिन कुछ पैकेजज़ यहाँ उपलब्ध्द नहीं है - इस सूची में कुछ नाम दिएं हैं
और बीमर जैसे कुछ महत्त्वपुर्ण पैकेजज़ भी नहीं है
इन मिसींग यानि अनुपस्थित पैकेजज़ को जोड़ने की प्रक्रिया अगले स्लाइड़ में है
बुनियादी मिक्टेक को स्थापित करने के तुरंत बाद उसे अपडेट यानि नवीनतम बनाएं
स्टार्ट बटन पर क्लिक करें जो टास्क बार में है - नीचे की तरफ़ बाएँ हाथ के कोने में
अब प्रोगाम पर क्लिक करें और फ़िर मिक्टेक पर
अपड़ेट पर क्लिक करें मिरर को चुनें प्रोक्स टी वगैरा - ज़रुरत के हीसाब से वह नवीनतम हो जाएगा
उसके बाद टेकनिक सेंटर का प्रयोग करें जैसे इस ट्यूटोरियल में समझाया गया है
जब कोई पैकेज अनुपस्थित हो तो उसे स्थापिथ्त करने के लिए मिक्टेक आप को प्रोत्साहित करेगा
आप उसे इंटरनेट से स्थापिथ्त कर सकते हो
या फ़िर आप एक सी ड़ी ड़िस्ट्रिब्यूशन से भी यह कर सकते हो
पहले सारे फ़ाइलज़ को हार्ड डिस्क पर कौपी करें और फ़िर वहाँ से उसे स्थापिथ्त करें
सी ड़ी से स्थापिथ्त करने में कुछ दिक्कतें हैं - इस स्थापना के लिए हार्ड डिस्क पर करीब एक एम बी की जगह की आवश्यकता है
अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रयोगकरता समुदाय से सम्पर्क करें
उदाहरण के लिए - टग इंडिया
हम फ़ोसी डॉट इन द्वारा कुछ हद्द तक सहायता देने की कोशिश करेंगे
भविष्य में हम लेटेक पर कईं स्पोकन ट्यूटोरियलज़ जोडना चाहेंगे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
इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद
कृपया अपनी राय कन्नन ऐट आईआईटी बी डॉट एसी डॉट इन पर भेजें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
धन्यवाद